पिक्चर एक दुकान का है यह दुकान के बाहर ब्लू रंग का पेंट किया गया है यह दुकान में पत्तों से सजावट करी गई है दुकान के अंदर कुछ डायपर्स टंगे हुए हैं।

यह पिक्चर एक स्टेडियम का है यह स्टेडियम के चारों तरफ में ब्लू और व्हाइट कलर का ग्रिल है।

पिक्चर में एक बहत सुंदर सी फल्स सीलिंग है इया फल्स सीलिंग में--

तार लगे है।

पिक्चर मेंएक हरे रंग की ग्रिल है ग्रिल से थोड़ी दूर पर कुछ बच्चेफील्ड पर फुटबॉल खेल रहा है।

पिक्चर में एक फील्ड है या फील्ड से थोड़ी दूर पर एक बाउंड्री है यह बाउंड्रीज से थोड़ी दूर पर हरे भरे पेड़--

पिक्चर में झोपड़ियां है या झोपड़ी के बाहर में बहुत सारी साइकिल्स और बाइक खड़ी है। थोड़ी दूर पर एक ट्रक है।